यहाँ एक प्लेट मे मछलिया रखी हुई है जिनकी क्वॉन्टिटी नौ हैं ।

यह पता नहीं कौनसी मछली बोलते हे इसको पर ये मछलिया ही है और जिसे कोई पकड़ा हुआ हैउस प्लेट को कोई पकड़ा हुआ है।

जेसे की बोल्स बच्चों के खेलने के लिए है और फेविकोल्स बाकी ओर भी अदर्वाइज़ सारी चीजे यहा सेल हो रही हे।